ई न भारी घर बा एकगो आदमी पर्ची लेके बैग टांग के खड़ा बा पेड़ ओढ़ लौकत आ सीडी उड़ी लौकत आ।

इतना भारी घोर लौकता आ इतना अच्छा लगत जमीन उमीन लौका आ बादल-वादल लौकता बा बिजली उजली लाइट वाइट लौकत बा तार वार लौकत आ इतना अच्छा लगत --

कितना नीक लगाता तार वार लौकाता एतना अच्छा लागता पेड़ एतना हरा-हरा लउकता नीचे जमीन पर लउकता कितना अच्छा लाग --

मंदिर ह। माताजी लोग क मो मंदिर ह। एतना सुंदर लागता। घंटा उन्टा टाँगल बा। चुनरी एमें लागल बा। नीचे टाइल्स ओइल्स लागल बा। लाइट ओइट लागल बा। बलफ ओलफ बरल बा।

तार वोर लउकता बा बिजली विजली लउकता हेने बल्ब वलफ लगल बा टाइल्स वाइल्स लागल बा। केतना सुंदर लागता उ पेड़ ओड़ लउकता बादल-वादल लउकता एतना सुन्दर लाग --